बहुत सारे जूस के डब्बे हैं।

इस फोटो में बहुत सारे खेत दिख रहे हैं।

ऊपर सुजुकी लिखा हुआ है।

एक महिला खड़ी हुई है।

एक गाड़ी लाल रंग की है।

एक ईंटों से बना मकान है।

जिसके सामने पांच बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

उसके बालों में लाल चिमटिया लगाई हुई हैं।

एक हरे कलर की मेज है।

लाल कलर का बॉक्स है।

नीचे लोहे के पहिए धरे हुए है।

नीचे कुछ बैग धरे हुए हैं।

यह एक मिठाई की दुकान है।

ऊपर काले बादल छाए हुए हैं।

यह एक कैफे का फोटो है।

इस फोटो में तीन रिक्शा खड़े हुए हैं।

ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है।

उसके साइड में एक भूस का टोकरा है।

एक लोहे का खम्भा है।

नेट का एक छोटा कमरा है।

एक पोस्टर लगा हुआ है।

पोस्टर पर ताऊ दा ढाबा लिखा हुआ है।

सफेद रंग के पन्नियों से खुड बनाए हुए हैं।

यह एक फोटो शॉप की दुकान है।

इस फोटो में घीया धरे हुए हैं टमाटर धरे हुए हैं।

पत्ता गोभी धरी हुई है आलू धरे हुए हैं।

बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यह एक पेट्रोल पंप है।

पीछे पोस्टर लगा हुआ है।

इस फोटो में एक नीले कलर की मशीन है।

एक कच्ची ईंट की दीवार है।

कुछ लोहे के पाइप रखे हुए हैं।

पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

इस फोटो में दो व्यक्ति हैं।

एक लाल कलर का खंबा है।

यह शीशे में देख कर फोटो खेंच रहे हैं।

पीछे बहुत सारे शीशे हैं।

बहुत से लोग खड़े हुए हैं।

इस फोटो में एक कमरा है।

लड़की दीवार पर चित्र बना रही है।

इस फोटो में यह एक हेयर सैलून की दुकान है।